सामने बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जोकि बहोत ऊंचे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक ज्वेलर्स का शोरूम दिखाई दे रहा है।

उसके आगे बहोत लड़के खड़े हैं जोकि फोटो खींचा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है।

और एक तिरंगे से बनी हुई चुन्नी लग रही है जो कि तिरंगा बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है।

शायद ये शादी का माहौल लग रहा है बहोत ही अच्छा लग रहा है और बहोत ढोल नगाड़े से जश्न मना रहे हैं।

और वातावरण को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।